इस दुकान से कुछ दूर मुझे एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है जिसके पास एक आदमी खड़ा है।

और बहुत ही सुंदर ढंग से नृत्य कर रही हैं उनके पैरों में गुंगरू भी है और वे देखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं।

बाहर की इमारतों को देख रहा है जिस तरह से यह चित्र--

ये मुझे नल और फवार की दुकान दिखाई या शोरूम दिखाई देन पड़ रहा है यहां पर--

और आसपास भी बहुत जगह दिख रही है।

यह जो जगह है यह हमारी पठानकोट के धारकला में स्थित है जिसको हम मिन्नी गोह के नाम--